यह टावर बहुत ज्यादा महँगा है।

और मूर्ति के आस-पास कई सारे पेड़-पौधे हैं।

यहाँ पे बच्चे किताब खरीदने के लिए बहुत दूर-दूर से --

मेहेंगो दामों में मिलते है यहाँ पे लोग खरीदने के लिए --

यह सैलून काफ़ी बड़ा --

आते रहते हैं। यहाँ पे बाल और दाढ़ी बहुत अच्छी तरह से --

बच्चे के के साथ गार्जियन --

और यहाँ पे छठ पूजा धूम धाम से कर रहे हैं।

पेट्रोल भराने के लिए बहुत दूर-दूर से आते रहते हैं। यह पेट्रोल पंप में --